यह मुझे सड़क के बाजू में एक बैंक लग रहा है जिसमे चार पांच जनों की लाइन लगी हुई है।

और पीछे काफी सार एक्सरसाइज करने क चीज़े पड़ी हुई है।

एक आदमी जो उनकी किताबो की बेच रहा है ब्लू कलर की लाइट शर्ट पहनी हुई हैओर उसके बगल मे जो आदमी उसने--

लाइट पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है।